बहुत सारे पर्दे मारे गए हैं यहां पे बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है भगवान--

बहोत सारी एल_ई_डी लाइट्स कमरे भी है बाहर यहां पे चेयर लगी भी है।

यहां पे एक पोस्टर का टेबल पे के पास यहां रखा हुआ है चार्ट यहां।